वो चिट्ठीयों में दवाई लिख के दे रहे हैं उनके पास बहुत सारी दवाएं--

यहां पर एक ए_सी रखी हुई है ए_सी के पंपों और उसका टाइमर रख हुआ है।

पीछे साइड बच्चों के ए_सी लगी हुई है और तिरंगी गुबारे लगे हुए हैं।

उसमें कुछ पॉट्स लगाए हुए हैं नीचे गटार है।

ए इससे डेकोरेट किया गया है बाजु साइड बॉक्सेस रखे है उसके उपर गुल्दस्ते रखे हुए है।

बीच में सोफा है उम्म नीचे साइड व्हाइट कारपेट बिछाए हैं पीछे साइड रेड कारपेट बिछाए हुए हैं।

रसगुल्ला गुलाब जामुन के होटल अह बोर्ड एम_एस वैशाली।

सामने एक पोती कलर की दिख रही है एक रेड कलर की जो पैकिंग करे हुए--

यहां पे होटल है नवनी होटल बोलकर यहां पे लाइट अह लाइट है रेड एंड व्हाइट कलर की इसको उम दरख्त के जरिए--

और पर्दे लगे हुए हैं स्टू स्टूडेंट की यूनिफॉर्म ऊपर स्काई ब्लू टी शर्ट नीचे ब्लू कलर की पैंट है।

यहां पे पर आ रहा है जो बॉटल बन कर शेप में आ रहा बन रही।

नीं आसमान साफ है पीछे हरयाली दिख रही है यहाँ पर कॉलम खड़े तैयार हो गये है उसके अंदर सीमेंट भरना--

वो किसी उम्म सड़क एक साइड सड़क पर नमाज सजदा कर रहे हैं और वहां पे एक शॉप है वहां पे दो पुलिस ऑफिसर ठहरे हुए हैं।

यहा पर एक बहोत बड़ा डेम्प है डेम्प के दरवाजे ओपन होगये है पाणी इतनी तेजी से बह रहा है।

हेम एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड । नीचे एक थैली रखी हुई है एक पेंट का डब्बा रखा हुआ है।

और बीच में लठ ऊं कुछ लगा हुआ है और जैस्मीन दि के भी फूल है इसमें--

शिक्षों के लिए गए पहाड़ी दिखाई हुई है ऊपर टेंट दिखा है बाजू से--